और इसका अंदर में एक ग्राउंड में और साइड में एक पेड़ बड़ा सा पेड़ है।

बहुत सारा आदमी मस्ती कर रहे और एक बड़ा सा गेट लाइट लगा के सुंदर सा ग्रीन एंड रेड कलर का लाइट लगाया हुआ है।

उसमें एक छोटा छोटा गच्ची है और साइड में रोड है रास्ता का सामने और उसका पीछे एक फिर बिल्डिंग है।

और और साथ में साबुन और ये कोलगेट एंड पपाया शॉप और बहुत सारा अलग अलग कार्टून में रखा हुआ है।

और पीछे में एक में क्रॉस के ऊपर जीजस लटकाया हुआ है।

वहां में मेरी है और ये घर का आ टेंपल का ऊपर में एक क्रॉस साइन लगाया हुआ है और --

और साइड में यह नेकलेस लोग रखा हुआ है वहां में बहोत सारा सामान है अलग भी--

और उसका बिल्डिंग के ऊपर में ए बी ए लिखा हुआ है।

बड़ा सा गाड़ी का गेराज है।

इस लेफ्ट साइड में एक रेड कलर का गाड़ी है जो ऊपर में लटका के रखा हुआ है।

टोमेटो रखा हुआ है और गाजर रखा हुआ है ब्रिंजल रखा हुआ है।

और अलग वो चीज सामने फैला के रखा हुआ है।

और एक जोड़े कपड़ा पहन के खड़ा है ऊपर में।

एक ओर एक आदमी साइड में खड़ा होके है और उसका सामने में एक बाइट है रेड कलर का।

और उसका आगे में एक रेड गाड़ी दिखाई दे--

बहुत सारा सामान है दुकान में।

और साइड में रजिस्टर भी रखा हुआ है और उसका ऊपर एक स्कैनर का--

और साइड साइड में पिंक फ्लावर का गच्ची है।

और आधा माला सब जो ऊपर में टंगा के है।